कुछ रखा हुआ नजर आ रहा है दो प तकिए दिखाई दे रहे हैं एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें बहोत सारे समान रखे हुए नजर आ रहे हैं।

सामने की दीवाल में ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही है एक टी_वी लगा हुआ है।

सामने एक व्हाइट और रेड कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे लोहे के खिड़की बने हुए है एक बड़ा सा ग्राउंड नजर आ रहा है जिसमें --

एक बड़ा सा टेबल बिछा हुआ है एक आदमी साड़ी दिखाते हुए नजर आ रहा है लाल कलर की साड़ी पहने हुए औरत देख रही है साड़ी।

कांच का एक बड़ा सा टेबल नजर आ रहा है वाइट कलर की दीवाल दिखाई दे रही है।

साइड में एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ग्रे कलर का--

सामने एक वाइट कलर का घर दिख रहा है काले रंग का दरवाजा नजर आ रहा है स्कूटी खड़ी हुई नजर आ रही है दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं सामने एक--

एक भूरे रंग का दरवाजा नजर आ रहा है टाइल्स लगी हुई है भूरे कलर की--

टेबल के ऊपर गोंद दिखाई दे रहा है एक पीठा दिखाई दे रहा है ब्लैक रंग की कुर्सी नजर आ रही है साइड में फाइबर लगा हुआ हैं।

ऊपर बहोत सारी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है जमीन में भूरे रंग के टाइल्स लगे हुए नजर आ रहे--

ग्रे कलर की कुर्सी दिखाई दे रही है ग्रीन और पिंक कलर का पिलर में एक घड़ी नजर आ रही है येलो कलर का टंकी दिखाई दे रहा है।

सामने यहां कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है।

नीचे कपड़े की दुकान नजर आ रही हैं जिसमें अजय टेलर एंड क्लॉथ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह कपड़े की दुकान नजर आ रही है बने हुए जहां बहुत सारे कपड़े रखे हुए नजारे सामने की दीवार में ए_सी लगी हुई है पंखे लगे हुए नजर आ रहे हैं।